मुर्गिओं को सीढ़ी टाइप से बना के रखा गया है।

यहाँ एक स्कैनर दिख रहा है जिसमें व्हाट्सअप फोनपे --

गर्दन मोड़ा हुआ है बहुत सारे घाँस है पानी के ऊपर खड़ी हुई है।

दीवाल सफ़ेद कलर का है टेबल सफ़ेद और नीले कलर का है।

सामने दो आदमी दिखाई दे रहा है बैंक दिखाई दे रहा हैं।

शर्ट पेहना जो भी हो काला और सफ़ेद मे है।

सामने के लोग है जो है की सफ़ेद कलर का कपड़ा नीला कलर का और कुछ है।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

हरे कलर किया गया है लाइन-लाइन दिखाई दे रहा है पाइप दिखाई दे --

यहाँ असेंबली आर गार्ड चर्च लिखा हुआ है।

यहाँ - वहाँ सारे कॉपी पुस्तक पेन गोंद --